सबसे सुपर हटे मार्केट है किराना स्टोर का बना हुआ है जो क्रम से सौदा जमाए हुए है अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है अलग अलग आइटम रखे हुए है।